वाओ कितने अच्छे फूल हैं कितने सुन्दर फूल हैं। रोज का है गुलाब का है। बहोत अच्छे पौधे हैं।

जे पेट्रोल पंप है | यहाँ पे पेट्रोल भरवाते हैं और पेट्रोल वाले पेट्रोल डालते हैं | यहाँ पे सभी सुविधाएं होती हैं | टेम्पो आतें हैं बस आती हैं।

रेलवे स्टेशन ऐं एटा का । स्कूटी खड़ी ऐं यहाँ पर टिकट मिलते हैं । पता नहीं दस का है सोै का है ढाई सौ रुपए का है । जहाँ तक जाओ वहीँ तक का किराया लगता है बाकी किराया लगता है।